बच्चियां हाथ में नोटबुक ले कर कुछ लिख रहीं हैं।

साथ में झाड़ियां के पीछे बड़ी बड़ी चिमनियां दिख रही हैं।

शॉप के सामने कुछ चेयर रखी हुई हैं।

सामने ई रिक्शा खड़े हुए है।

यह एक रेस्टोरेंट का डाइनिंग एरिया हैं।

नवीन पर राम सीता की प्रतिमा बनी हुई हैं। प्रतिमा के चारों ओर--

और एक व्यक्ति बैट लेकर प्रैक्टिस कर रहा है।

एक ने इंग्लिश से लिखा हुआ है।

साइड में भी टूथब्रश टंगे हुए हैं।

दिवालों पर बैलून से सजावट की गई है।

जहां पर एक ट्रैक्टर एवं ट्राली खड़ी हुई है।

पास में सिंचाई वाले काले रंग के कुछ पाइप रखे हुए हैं।

कटनी है यह सामने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है।

एक के ऊपर एक डॉल बैठी हुई है।

यहां शोरूम में दीवाल पर बॉम्बे ड्रेसेस का बोर्ड लगा हुआ है।